यह नाफी इसा जहा इलाका है जहा ब्रिज का काम चल रहा है और रात का समय है यहा पर बहुत सारी लाईटे लगी हुई है।

और इसकी दीवार व्हाइट अँड ब्राउन कलर से पेंट की गई है और इसको डिज़ाइन करने के लिए ग्रीन --

इसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है और इसका कलर हलका येल्लो है।

यहा भिन्न भिन्न प्रकारके आईट्म रखे हुए है जिनमे पलंग और तकिये के के कवर मिलते है।

व्हाइट एंड पिंक कलर के फूलों से सजाया गया --

और सामने एक फोटो लगा हुआ है।

यहा अलमारी रखी हुई है और इसके पास ही बहुत सारे समान रखे हुए है यह रूम लाइट से रोशन है।